नदी के अंदर हमें एक पक्षी दिखाई दे रहा है।

एक आदमी साइकल पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है हमें जनरेटर दिखाई दे रहे हैं।

यहां हमें एक कुआं दिखाई दे रहा है।

एक सिल्वर कलर का तस्ला दिखाई दे रहा है।

लिखा हुआ बैनर दिखाई दे रहा है जिसपे एंट्री लिखा हुआ है।

दूसरा आदमी उसकी फोन रिकॉर्डिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है।

घर के ऊपर एक बैनर लगा हुआ है।

इनमें पीछे नीले कलर की टीन दिखाई दे रही है।

और कुछ लाइटे भी दिखाई दे रही है और हमें कुर्सी भी दिखाई दे रही है।

हमे एक चैनल दिखाई दे रहा है पीछे हमे एक स्टीकर दिखाई दे रहा है जिसपे लिखा हुआ है डैव यूनाइटेड ।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

हरा पीला दिखाई दे रहा है।

यहां हमें एक गाड़ी का कारखाना दिखाई दे रहा है।

एक सामने शीशा भी दिखाई दे रहा है हमें एक पंखा दिखाई दे रहा है।

उसके नीचे एक शीशा भी दिखाई दे रहा है।

हमें पीछे एक लाल कलर की शर्ट में आदमी दिखाई दे रहा है।